यह एक प्रयोग शाला है मतलब हॉस्पिटल यहा पर एक दिवार पर एक वॉच लगी है और उसका कलर क्रीम है और वॉच का कलर व्हाइट है यहा पर दो गेट लगे हुए--

यह एक गार्डन है यह पर बहुत सारी हरी हरी डूबा भी लागि हुई है यह पर दो गेट हे और वे लोहे के बने हुए है यह पर एक रोड लगा हुए है यह पर बहुत बड़ा पेड़ है।

यह पर बहुत ही बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हे और कुछ निचे छोटे छोटे लगे यह पर सूरज बहुत ही अच्छा दिख रहा है।

पूरे बादल भी नजर आ रहे है और उनके एक रास्ता भी है।

है एक हॉस्पिटल है उसके बाहर कई सारी कार खड़ी हुई है कुछ ब्लू कलर कि है कुछ व्हाइट है और कुछ रेड भी है और एक एम्बुलेंस भी खड़ी हुई --

है और कुछ ब्लैक रंग की कुछ व्हाईट रंग की भी है घड़ी बहुत ही बड़ी बड़ी है।

बोर्ड लगा हुआ उस पर होटल गो गोवा लिखा हुआ है निचे कुछ बड़े बड़े गमले रखे हुए है।